ये एक मस्जिद है मस्जिद चार मस्जिद हैजिसमे हरे कलर का रेड का पट्टा खींचा हुआ है पिछे झाड़ है।

पेड़ है नीले और व्हाइट कॉलर के पट्टे है मिट्टी है उस तरफ़ भी नीला हरा कॉलर का पेड़ दिख रहा है।

ठीक टूटा मकान है ऊपर घास बिछी है छप्पर है खुला आसमान है मंदिर है नीचे मिट्टी है।

रेड कलर का मकान दिख रहा खुला आसमान है नीचे फूल लगे हुए है रोड है।